और कई सारे जो हैं मीनारें बनाई गई हैं कई सारे उसमे माइकस लगाए गए हैं ऊपर |

और ये बाहर बकरियाँ भी बठी है बहुत सारे गुम्बद और मीनारें है काफी बड़ी प्रतीत होती है मस्जिद जो भी--

यहां पर भी कई सारी बाइक्स खड़ी है ब्लू कलर की ब्लेक कलर की और साइकिल्स भी है और ये कोई टपरी वगेरा है सायद ।